ये जो पिक्चर है जो इमेज है वो है एस_बी_आई ।

एक रास्ता का सामने में है और बहुत फ्रेश दिख रहा है फ्रूट्स लोग।

डाइनिंग टेबल है और उसका सामने में फैन है फोन भी चार्ज किया हुआ है।

ये जो पिक्चर में है यह दो टाइप का कुछ दुकान है।

डिफरेंट डिफरेंट कलर किया हुआ है एक घर में भी और टीना से ऊपर में और बहुत सफर--

और सामने का व्यू भी ठीक लग रहा है ये सफा से रखा हुआ है जैसा लग रहा है।

ये पिक्चर में जो है वो एक ब्रिज है।

बहुत गाड़ी भी चलता होगा और ट्रेन भी और एक व्यू है ये दूर से खींचा वाला व्यू --

ये जो इमेज पिक्चर है ये एक बेकरी शॉप है।

किया हुआ है और दो घर है एक अलग तरफ मे--

कर रहा है इनकंप्लीटेड है और चार ठो इंसान पांच ठो इंसान--

फेस और मेंस लोग का प्रोडक्ट और हम लोग का फिजिकल अपीरियंस मेंटेन करने के लिए जो जरूरत है वो सब चीजें यहां पर हैं।

तो ये जो एक सीटी का बाहर लगता है मुझे यह पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है बोलो यह जो भी है।

और ये जो पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है वो--

शनि देव जैसा लग रहा है और पानी भी बहोत भरा हुआ है।

और फूल भी है फोटो फ्रेम्स है।

और तीन इंसान दिखाई दे रहा है यहां में और यह ग्रीन कलर का है और फूल भी सुंदर--

बाइक्स लोग भी है और एक इंसान का माथा भी दिखाई दे रहा है।